पॉलिथीन में सामान रखा हुआ है हर शेल्फ में अलग-अलग सामान डिटर्जेंट रखा हुआ है ।

यह छोटा सा तालाब दिख रहा हे जिसमे थोड़ा सा पानी भी दिखा रहा हे ।

एक सिगनल का बोर्ड भी लगा हुआ है दूर पर पहाड़ और आसमान भी दिख रहा है।

कुछ लकड़ी के डंडे भी दिख रहे हें पीछे कुछ पेड़ भी बने हुए हें ।

यहाँ बड़ा सा मैदान दिख रहा है जिसके सामने बड़ा ईटो का घर दिख रहा है ।